और ए सब बहुत अच्छी चीज होती है इससे ज्ञान होता है और इसे पड़ने समझने में भी समझदारी होना चाहिए।

और ये जो है जो सब अपना-अपना ड्रेस पहनी हुई है बहुत सुन्दर लग रही है लाल रंग का ड्रेस है हरा रंग का ड्रेस है ब्लू रंग का ड्रेस है खूब अच्छी देखने में लग रही है प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही है।

ई भी बहुत अच्छा लग रही है इसमें बैंड - बाजा का व्यवस्था किया गया ढोल-तशा है और इसमें साज-बाज भी अच्छा है देखने में खुबसूरत लग रही है।

मर्द भी और बुआ-बच्चा सब इसमें बाल कटाता है और इसके लिए सभी आदमीओं को आना पड़ता है ये सेलून बहुत अच्छा तरह की है।

इ भी एक स्टेशनरी है होलसेल बुक सेण्टर है|

ये भी रेलवे स्टेशन का सीन आ रहा है प्लेटफार्म लग रहा है इसमें गाड़ी-घोड़ा अनेक प्रकार की खड़ी हो रही है ट्रक लगा हुआ है यह लोहा का है इसमें बाउंड्री है यह बैठने का जगह बना हुआ है।

और दिख रहा है बहुत सजावट अच्छा ढंग से किया गया है लेने वालों को और देखने वालों को भी सब कुछ फ्री है।

और देखने में लग रहा है ओह्ह निकलेगा उसके बाहर कि बस बाइक पे लेकर भाग जायेगा |

जो है उसमें भी जैसे भी है सब आदमी इसमें है।